नमस्कार openfoam में introduction to snappyhexmesh पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे openfoam में mesh बनाने के लिएsnappyhexmesh में पैरामीटर्स
पूर्व आवश्यकता के रूप में उपयोगकर्ता को आवश्यकता है:
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ: ऊबुंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1204 openfoam वर्जन 222 paraview वर्जन 3120
अब snappyhexmesh utility के साथ mesh बनाना सीखते हैं
steps निम्नानुसार हैं
हम terminal flange और flange के लिए path प्रविष्ट करेंगे जैसे कि दिखाया गया है type करें: cd space openfoam222/tutorials/mesh/snappyhexmesh/flange और enter दबाएँ
अब ls type करें और enter दबाएँ यहाँ constant और system दो folders हैं
cd space system type करें और enter दबाएँ
अब ls type करें और enter दबाएँ आप snappyhexmeshdict file देख सकते हैं
file का कंटेंट देखने के लिए type करें gedit space snappyhexmeshdict और enter दबाएँ ध्यान दें: यहाँ h m और d capital letters में हैं
यह snappyhexmeshdict फाइल को खोलेगा
snappyhexmeshdict file में सभी निर्देश हैं और पूरी प्रक्रिया इस file में है
snappyhexmeshdict की पहली पंक्ति के साथ आप process के sections को activate या skip कर सकते हैं
geometry section में snappy प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी सक्रिया क्षेत्र को परिभाषित किया जा सकता है
parameters जो cell splitting की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं castellatedmeshcontrols section में वर्णित है
parameters जो कि नीचे सूचिबद्ध हैं snappyhexmeshdict file में अच्छी तरह से समझाया गये हैं ncellsbetweenlevels प्रत्येक शोधन स्तर के लिए cells की संख्या को परिभाषित करता है
यह जितना अधिक होता है mesh अधिक क्रमिक होगा
explicit feature edge refinement section में आप geometrys feature edges के लिए विशिष्ट शोधन स्तर निर्धारित कर सकते हैं emesh file को surfacefeatureextract utility के साथ प्राप्त किया जा सकता है
surfacebased refinement section में आप geometry file में परिभाषित सभी surface का शोधन स्तर set कर सकते हैं
mesh selection बहुत ही महत्वपूर्ण parameter है यदि चयनित बिंदु geometry file में वर्णित surface के अंदर है तो snappyhexmesh आंतरिक mesh बना लेगा
अन्यथा बाहरी भाग जैसे blockmesh के अंदर मैस्ड है
अगला step surface जियोमैट्री में cell शीर्ष बिंदुओं को स्थानांतरित करना है
snapping प्रक्रिया चार parameters द्वारा की जाती है:
ये parameters mesh और stl surface के बीच iterations और tolerance के number को नियंत्रित करता है
nsmoothpatch option बाहरी boundary wall की संख्या को निर्दिष्ट करता है mesh चिकना हो जायेगा यदि पुनरावृत्तियों iterations की संख्या अधिक है
tolerance option दूरी को निर्दिष्ट करता है कि program snap से बिंदु के लिए दिखना चाहिए दूरी वह संख्या होगी जो tolerance में है
nsolveiter option निर्दिष्ट करता है कि कितनी बार snappyhexmesh का snapping भाग रन होना चाहिए
nrelaxiter option mesh निर्दिष्ट करता है कि relaxing script कितनी bad रन करना चाहिए जो कि खराब mesh प्वाइंट को निकालता है
mesh layer जोड़ने की प्रक्रिया में boundary से मौजूदा mesh को सिकुड़ाना और cells के layers को प्रविष्ट करना शामिल है
parameters का पहला group layers और surface के आयाम को परिभाषित करता है जिस पर उन्हें संलग्न किया जायेगा
relativesizes option जो कि true or false है अगले दिए गए parameters को पढने के तरीके को बदलता है
layers option में आप layers और patch की संख्या को परिभाषित कर सकते हैं जिसमें layers जुडे हैं यह geomery submenu में एक stl bold text patch होना चाहिए और उपयोगकर्ता परिभाषित क्षेत्र नहीं होना चाहिए
expansionratio parameters layers जो कि दो subsequent layers के बीच का अनुपात है के growth factor को निर्धारित करता है
finallayerthickness पैरामीटर्स अंतिम layer की मोटाई को निर्धारित करता है minthickness पैरामीटर्स layer की न्यूनतम स्वीकार्य मोटाई निर्धारित करता है
advanced settings is the second group of parameters it contains more specific controls that can help in layer creation
featureangle वह angle है जिसके ऊपर surface आगे नहीं बढेगा
nrelaxiter option mesh जितनी बार relaxing script को रन करता है उस संख्या को निर्दिष्ट करता है
maxfacethicknessratio option aspect ratio की अधिकतम स्वीकार्य value को निर्दिष्ट करता है
meshqualitycontrols पैरामीटर्स snap और addlayers parts में mesh को उत्पन्न करने के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है
99% मामलों में default values को रखना ही बेहतर है लेकिन कभीकभी आप mesh बनाने के लिए एक या अधिक controls को deactivate कर सकते हैं
ये snappyhexmeshdict में भिन्न parameters हैं ये parameters snappyhexmesh utility का उपयोग करके mesh बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं
संक्षेप में
इस tutorial में हमने openfoam में mesh बनाने के लिए snappyhexmesh में अलग अलग parameters को सीखा
इस लिंक पर उपलब्ध video देखें:
spoken tutorial project teamspoken tutorial का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है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
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद